--र बड़ा बस स्टेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारी बसे रखी हुई--

यहाँ पर देखा जाये तो अच्छी ऱगे बेरंगी बसे रखी हुई यहाँ पर एक दिवस रखी यहाँ पर एक लाल बस रखी है।